यहाँ पे बहोत बड़ा बुक स्टोर नज़र आ रहे है। एक आदमी नज़र आ रहे हैं।

डिक्शनरी मिल रहे हैं। कॉपी मिल रहे हैं। किताब मिल रहे हैं। पेंसिल मिल रहे हैं।

गोन मिल रहे है। ड्रॉइंग कलर मिल रहे हैं।

पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं। ड्राम --

जो कि बोहत लाईटिंग लगी हुई है। बोहत ही रंग बिरंग के --